यह एक कारखाना है इस कारखाने में बहुत सारी मशीने रखी हुई है।

और काफी अच्छा दृश्य नही--

और सीढ़ियां भी रखी हुई है व्हाइट कलर का बड़ा ए_सी है।

और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

बटर का बिस्कुट रखा हुआ है और एक--

पेड़ पौदे रखे हुए है।

चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा है और शांति बनी है।

यहां पर लोग खूब बैठे।

यहां पर बहुत सारे फूल्स रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे डॉक्टर सेल्फी ले रहे हैं।